ऊपर में बहोत सारे बल्ब लटके हुवे नजर आ रहे हैं।

सामने एक बड़ा रूम देखने को मिल रही है।

सामने एक बरा हॉल देखने को मिल रहा है।

यहा पर बहोत सारे लोग है जो चश्मा पहने हुए हैं।

और सब फोटो घिचाने में लीन है।

यहां लिखा हुआ है चंपारण ढाबा एंड हांडी मीट हाउस --

दुकान में बहोत सारे सामान टंगे हुए हैं।